स्कूटी खड़ी है एक पिंक कलर की एक येलो कलर की ये कलर बहुत ही खूबसूरत नजरिया है इसके चर्क भी बहुत सुंदर है।

क्वॉलिटी के प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं और बाहर में पुतले भी खड़े किए हुए है कपड़ों वाले।

आ रहे हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत नजरीया पानी भी एकदम कूल है इसमें बाहर चारदीवारी भी बनी हुई है।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

और सुनित्रों में किताबें अभी रखी हुई है देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर या फरश भी बहोत --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

पास में इस तस्वीर में यातायात पुलिस भी खड़ी हुई है और पास में बड़े बड़े ट्रांसमीटर भी है।

बस में एक बोर्ड लिखा धरा है और पीछे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं।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

बहुत बड़ा हॉल है जिसमें बहुत सारे गेटे और मार्बल के --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

जेट लगी हुई है एक जेट दो जेटो में अलग अलग प्रकार के हैं।

दुकान दिखाई दे रही है जो की आइसक्रीम की दुकान है देखने मे ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है।

सफेद कलर का मकान बना हुआ है और उसमें--

यहां पर एक होटल बना हुआ है और इस होटल के --

गायिक कलाकार बैठे हुए है और उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे है और उनके आगे --